यह दृश्य में एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है जिसमें दवाई पूरी तरीके से भरी हुई है।

एक आदमी द्वारा एक पेशेंट को दवाई देने का कार्य किए जा रहे हैं एवं यह मेडिकल शॉप में सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगे हुए हैं यहाँ रुके आदमी --